और यहाँ पर देखिए उधर साइड में दुकान वगेरह भी हैं ।

और यहाँ पे देखिए काफी प्रकार के कपड़े हैं लेडीज जेंट्स --

काफ़ी डिजाईन वगेरह है पुराने --

और उधर देखिए जिम के काफी सारे सामान सब वहाँ रखे हुए हैं और जिम भी काफी अच्छा है काफी अच्छी सफाई-सुथरा ।

ये देखिए बिस्तर है और बिस्तर पे तकिया लगा हुआ है और तकिया पे लोग बैठ के --

और नीचे देखने में पलस्टर किया हुआ है और उसी पे टाइल्स लगाई जायेंगी काफी कारीगर वगेरह भी हैं ।